व्हाइट कलर मे दिख रहा है सामने एक गेट दिख रहा है गेट के सामने मे काफी सारे यहाँ पर जो कुछ पेड़ है आसपास मे कुछ खंभे वगेरा दिख रहे है। और यहाँ पे मैदा--

बड़ा गेट भी दिख रहा है सामने में और आसपास मे यहाँ पर जो कुछ पेड़ बगैरहा दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर की कुछ पत्तिया दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है कुछ ब्लू व्हाइट कलर मे ।